झरना है जिसमें पानी गिर रहा है| एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह गो झरना है तीनगो पेड़-पौधा है और कुत्ता है।

एक ठो झर नदी हैं इसमें दो आदमी नहा रहे हैं एक बोतल हैं एक बैग हैं एक गोला सा है और एक दो तीन चार आदमी हैं।

बहुत डिफरेंट डिफरेंट कप और शो आईटम है अच्छी तरह से सजा के रखा गया है जिसके कारण वह गिरेगा नही और बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा और अच्छे ढंगो से बिकेगा नीचे ग्लास रखा हुआ जिसमें पानी नहीं है।

ऐसा कार तो ह मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। वाओ क्या कार है नाइस ब्रो ।

हमेशा अच्छी तरह से जिम करके अपने शरीर को एदम बॉडी बिल्डर बना लेते हैं और अच्छी तरह से घर में एक्सर्साइज़ कर --

एक नदी है जिसमें दो बच्चे तैर रहे हैं उसके पीछे एक सूरज उगा हुआ है एक नाव है और उसके पीछे बहुत सारे ग्रीन कलर के पौधे उगे हुए है उसके नीचे रहने पर आपको एक मछली दिखाई देगी।

दो किताब मिलते है। तीन अथी एक पेंसिल है एक कॉपी किताब जिसमें तीन बंदे खड़े है यहां पर रहने के लिए मस्त --

एक दो तीन चार ट्रक खड़े है पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भरने के लिए यह पर बहुत सस्ते में पेट्रोल मिलता है।

कोपी कलम का दुकान है। इसमें बहुत सारे कोपी किताब कलम पेंसिल कटर रबड़ सभी प्रकार के चीज मिलते हैं वे भी निःशुल्क ही ---